यहां साइकिल का शोरूम है जिसमें बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है। बच्चा सब का भी साइकिल है। छोटा वाला मोटरसाइकिल है।

डॉक्टर मास्क लगाया है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है टी-शर्ट पहना है ।

एक माँ है एक भैस का बच्चा है बच्चा चार रखा खा लिया है माँ के भी आगे मे चारा है रूम मे खिड़की है अलवेस्टर का बना--

बगल में राम का पेड़ है उसके बगल में बहुत सारा पौधा लगाया गया है पार्क जैसा दिखाई दे रहा है ।

ग्राहक गया है रिचार्ज कराने बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।